और सीढ़ी लगी हुई है अ बगल से चारों तरफ एक लोहे का जाली से एक जाली से कवर कर रखा है और एक बाहर एक चेयर रखी हुई है बैठने के लिए।

ये महात्मा गांधी का स्मृति बनाया हुआ है किसी गार्डन में उनको बैठ वो बैठे हुए है और अगल-बगल पूरे में पेड़-पौधे लगे हुए हैं ईंट से कवर है।

ये भी ये एक ग्रोसरी का फो अ ग्रोसरी सुपर मार्केट का अंदर का फोटो है जहां पर ग्रोसरी का समान रखा हुआ है कु --